और लाल कपड़े के यहां पे झंडिया लगी हुई हैं।

व्हाइट कलर का है एक उस एक मकान पे टंकियां पड़ी हुई हैं।